यहाँ कुछ पुरानी बाइक्स खड़ी है| कुछ पेंट की बाल्टी है| कुछ पेंट सा गिरा है और कुछ टूटा फूटा सा सामान रख्खा हुआ है इसमे बाइक मे दो पहियें लगे हुए है।

यह एक जिम है। जिम में कुछ मछीने रखी हैं और एक आदमी खड़ा है और वो फोन पे बात कर रहा है। एक सामने पोस्टर लगा है और कुछ यहाँ खिड़की है।

ये एक वॉटर पार्क के जैसा है और इसमें गेंदे की फोटो है। कुछ एक बच्चा उस पे बैठा है। कुछ एक आदमी उस पे खड़ खड़ा है।

एक तबला बजा रहा है। एक हाथ जोड़ के खड़ा है। एक कुछ कोई गिटार बजा रहा है। कोई कुछ कर रहा है और एक फिश की पेंटिंग है और एक मगरमच्छ की है ब्राउन कलर की है ये।